यहाँ पे शॉप दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे मेट --

यहां आप देख सकते हो एक स्टैच्चू नजर आ रहा है जिसके --

और यहां पे येल्लो कलर की --

और यहां पे क्यूब लगा हुए लोग खड़े हुए हैं।

बोहोत सी कैंडल यहाँ पे लगी हुई हैं।